घर के बाहर कुछ पिलर्स से दिख रहे हैं।

बगल में एक घर दिख रहा है जिसमे कुछ रस्सियां टंगी हुई दिख रही है यहां एक चैन गेट भी दिख रहा है।

जिसके ऊपर तकिया लगा हुआ है जो रेड कलर के हैं और नीचे वाइट कलर गद्दे लगे हुए हैं।

यहां बहुत सारे बोरी रखे हुए हैं और यहां कुछ टोकरिया दिख रही हैं।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

घर के अंदर कुछ स्विच बोर्ड दिख रहे हैं।

और कुछ तार लाल रंग के हैं यहां एक दरवाजा दिख रहा है जो नीले रंग का है बाहर से धूप का रोशनी पड़ रहा है यहां कुछ रस्सियां भी दिख रही हैं।

एक काले रंग का चेयर दिख रहा है पीछे बहुत सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं।

बगल में एक घर दिख रहा है जिसके ग्रिल दिख रहा है और पर्दा दिख रहा है।

और बहोत सारे तार भी दिख रहे हैं जो काले रंग के हैं बगल में कुछ पेड़ भी दिख रहा है यहां एक टेम्पू दिख रहा है।

जिसपे जनता लिखा हुआ है और यहां बहुत सारे टेबल दिख रहे हैं।

यहां एक सरफ का पैकेट दिख रहा है।

यहां एक टेबुल दिख रहा है जिसके पीछे बहुत सारे कुर्सियां दिख रही हैं।

इसके ऊपर एक लाइट लगा हुआ है एक आदमी में दिख रहा है।

पीछे में बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं और कुछ दीवार के पिलर्स दिख रहे हैं और ऊपर में एक खिड़की दिख रहा है लाइट भी जल रहा है।